सामने में बहुत बड़ा फील्ड है।

उसके नीचे में एक शटर है।

सामने में बड़ा सा पहाड़ है।

सामने में एक दरवाजा है एंट्री करने का काउन्टर लगा हुआ है।

मिठाई का दुकान है एक चाय का दुकान है ।